एक घोड़ी रखा हुआ है। ये कोई मसाज का दुकान है जहाँ कोई पेंट पूंट करते है। ए.सी. भी लगा हुआ --

यह रोशनदान बना हुआ है चार पाँच खाने बने हुए हैं।

यह दुकान के सामने एक भाई साहब खड़े है जहा पे एक भाई साहब नीचे भी खड़े है एक ऊपर है।